ये ब्रिज ब्रिज है और नदी नदी का ये टाइप का है बांध बंधा हुआ है।

इस तस्वीर को देखने से ऐसा लग रहा है ये कोई बैंक का अ तस्वीर है इसमे ग्राहक आए हुए हैं काउंटर पर खड़े हुए है।

वो अपना कोई डिपॉजिट कर रहे हैं कोई विड्रॉल कर रहे हैं और कैशियर काउंटर में भी कैशियर बैठे हुए हैं वो अपना फॉर्म भर के बहुत--

ये क्रिसमस डे का तस्वीर है जो की चर्च के अंदर में कुछ पादरी लोग बैठे हुए हैं।

ये हैदराबादी बिरयानी है जो की पैराडाइज होटल का बिरयानी लग रहा है।